एक कटोरी है उसमें चाट रखा हुआ है उसमें प्याज हरी मिर्च बहोत सारे चीज दिए हुए हैं वो खाने में बोहोत टेस्टी लगता है उसमें चमच्च भी है।

और उ उसमें मटर और पापड़ी गोलगप्पे बहुत सारे रखे हुए हैं उसके बगल में। वो बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है।

यहाँ पे पक्का का घर बन रहा है और अगल बगल में बहुत सारे गिट्टी ऊटी गिरा हुआ है और बहुत अच्छा डिजाइन का घर बन रहा है और यहाँ पे दो मंजिला घर बन रहा है और यहाँ पे बांस उस बहुत सारा है।

यहाँ पे पार्क है। बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे गे घुसने से पहले उस बहुत अच्छा गेट का डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत सारे झुलवा भी हैं यहाँ पे और पेड़-पौधे बहुत सारे हैं हरा-भरा देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे रंग बिरंगे झुलुए भी लगाए हुए हैं।

यहाँ पे बहुत सरे खिलौने है खिलौने में बहुत सारा झुलुवा भी हैं और बच्चा सब झुलवा झूल रहे हैं एक हरा कलर का एक गुलाल कलर का है और बच्चा सब बहुत सरे हैं बच्चा सब बहुत फुदक रहे हैं यहाँ पर झुलवा में बहुत मजा आ रहा है और बगल पेड़ पौधे भी बहोत सरे हैं।

यहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड है। उस फील्ड के अंदर में एक कुआँ भी खोदा हुआ है बहुत गहरा कुआ है और उसके पास में बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग भी है और उसका बगल में ईटा की कचरा भी रखा हुआ है और कुआँ में बहुत सारा पानी भी हो हो सकता है और उसके पास में एक गेट है और गेट में ताला मारा हुआ है।

यहाँ पे बहुत आदमी भी है। देख रहें हैं खड़ा हो के और इस ये बहुत अच्छा उठ रहा है बहुत अच्छा बहुत बड़ा बना रहा है मिस्त्री सब और यहाँ पे दो गो थाली में मिठाई भी रखा हुआ है। अगरबत्ती भी बारा हुआ है।